और नीचे देख सकते है पानी गिरा हुआ है इसलिए ऐसा कर दिया गया है अच्छा सुन्दर सा यहाँ पे जमीन में रख दिया होता फल कुछ फल भींग भी गए हैं अ जैसे जैसे खराब फल नहीं होते हैं। मतलब पानी देने से भी कुछ --

वगैरह की हुई है और यहाँ पर टी वी भी लगी हुई है। यहाँ पर आप उसे फेशियल वगैरह भी करवा सकते हैं और बाल भी यहाँ पर कटवा सकते हैं। इसमें बोहोत ही सुंदर सा इसका यहाँ पर

जो फ्रीजर कहते है उसका फोटो यहां पे दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते है टंकी नये वाला गाड़ी भी खड़ी है। इसमें पेट्रोल वगेरह भरने देते है फिर ले जाया जाता है और इससे शायद लाया भी जाता है और इसमे यहाँ पर भरा जाता है और इसमें बेचा जाता है फिर यहां से।

और यहाँ पे एक ग्राउंड है। इस ग्राउंड में क्रिकेट वगैरह कुछ --

यहाँ पर एक बहुत ही सुन्दर सी प्यारी सी लड़की का फोटो यहाँ पर दिखाया गया है । यहाँ पर फर्श बिछाया गया है ।

लाइटिंग वगैरा लगी हुई है। चील उड़ रही है और इधर दस नए छोटे-छोटे पेड़-पौधे इधर बड़े-बड़े पेड़ है छोटे नहीं। गलती हो गया। पेड़-पौधे भी यहाँ पर बने हुए --